यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ सामने एक बड़ा सा मैदान है जिस पर हरी हरी घास है --

ऊपर रंगीन आसमान दिखाई दे रहा है --

तीन शेष है जिसमें एक --

यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ --

एक सफेद कपड़े में है एक काला कपड़े में --

और सामने कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और छोटे-छोटे हरे पौधे लगे हुए हैं।

यहा पे मैं देख पा रही हू सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है।

लंबा सा स्टैन्ड बना हुआ है।

ऐक और ग्रीन सफेद कलर की है और सामने भी खड़ा हुआ है।

जो ब्लैक एंड व्हाइट है और बहुत मैदान है।

वो भी ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है ऊपर आसमान है।

वहाँ पे मेरे एक है सामने --

यहां पर मैं देख पा रही हूं सामने एक नदी है जिसका पानी ब्लैक एंड व्हाइट --

यहाँ पे पाया ही है --

सामने एक से है उसके बाजू में एक पेड़ है।

जो घर दिखाई दे रही है जिसके --

वो सच के मिले हुए हैं और सामने आज बैसे हैं।

सामने बहुत से पत्थर दिखाई दे रहे हैं और ऊपर एक पे आया जरा हुआ है --

और सामने किताब रखी हुई हैं।

शादी का मंच सजा हुआ है।

बैठे हुए हैं और सामने स्पेस है इस चेयर पे बहुत सारे --

यहाँ पे मैसेज पाया ही है --

हरी हरी झाल लगी हुई है।

और इसके पीछे एक पीला दिखाया गया है।

और नीचे हरी हरी घास लगी हुई है --

खरा है और सामने कार खली है जिसके आगे --

और उसके बाजू वाला गैस खुला हुआ है।